मिए चामपे वाले वहा पे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है उसके नीचे तीन सीढ़ी भी देखने को मिल रही--

के ऊपर एक बहोत बड़ा लोहे का अ का स्ट्रक्चर भी बना हुआ दिख रहा है।

सामने में एक बहोत बड़ा हॉल देखने को मिल रहा है और यहां पे बहोत सारे चेयर भी है व कुर्सी लगे हुए दिख रहे हैं औ यहां पे ए_सी भी देखने को मिल रहा है।

सामने में एक बारा सा रूम देखने को मिल रहा है वहां पे बहोत सारी लड़कियां डांस करते हुए भी दिख रही है।

सामने में एक बड़ा सा हॉल देखने को मिल रहा है और वो डी_जे में पूरा टाइल्स लगा हुआ है वो उजली कलर का और बीच में भूरा कलर का लाइनिंग भी देखने को मिल रहा है।

और नीचे में बाइक्स भी देखने को मिल रही है उसकी कलर काली और--

और यह इंसान हाथ में उजली कलर की कपड़े लिए हुए देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर एक टी शर्ट उजली कलर की रखे हुए देखने को मिल रही हैं।

पेर पौधे भी देखने को मिल रही है और उसके ऊपर बहुत बहुत हरे हरे भरे उम्म नीले कलर का आकाश भी देखने को मिल रही है।

और वहां पे दो इंसान दिख रहे है उसने पीले कलर का मास्क लगाया हुआ है और नीचे में फर्श है ओ भी--

ए ये ब्राउन कलर का है और उसके पीछे एक बोर्ड लगी हुई देखने को मिल रही है और उसके पीछे एक रैक है रैक्स में बहुत सारे समाने रखे हुए देखने को मिल रही --

सामने एक बहोत बड़ी पहाड़ दिखने को मिल रही है वो काले एवं भूरे कलर की और नीचे में बहोत स बहोत--

ये शीशे के है और वहां पे बहुत सारे नोट्स भी रखे हुए हैं जैसे की देसी अल उतर--

ये बहोत सारी कुर्सी भी देखने को मिल रही है वहां पे एक कुर्सी खाली है और चारों तरफ से घेरा लगा हुआ है ओय--